साइड में पहाड़े पहाड़ों में बहोत सारे झाड़ हरे भरे कुछ सुखे --

पत्थरों के बीच जो पानी है जहां कुछ कुछ सूखे हैं कुछ कुछ जगह पानी है पत्थर हैं।

पुतले हैं तीनों ने शर्ट पहनी है और हाफ कट कोट पहना है एकने ग्रीन एकने ब्लू और एकने स्किन में कोट पहना है।

लॉन्ड्री लैब का लिखा है वी केयर योर फैब्रिक्स उसमें कुछ सर्विस है।

क्लीनिंग स्टीम आईरन्स कलर टच एंड फिक्स और नंबर भी लिखे गए है कॉल कन --

बैंबू का कुछ बना है टेंपो चल रही है बादल लगे हुए हैं बहुत सारे वायर दिख रहे हैं।

बोर्ड में वलसाड सिटी पुलिस सेंटर स्टेशन लिखा है।

जिसमें आपको सेल्फ सर्विस एक बोर्ड पे लिखा हुआ दिखेगा।

तीन पानी के बॉटल रखे हैं और तीन कुछ खाने पीने वाले बॉटल है।

कुर्सियां है दो कुर्सियां ऑरेंज कलर एक कुर्सी ब्लैक में है एक बच्चा बैठा है ऑरेंज कलर की कुर्सी में।

और बाहर धूप बहुत तेज बाउंड्री काली कलर की बड़े बड़े पत्थर के किले हैं।

जिस जिसका बोर्ड पिंक कलर का लगा है। उसमें ड्रिल मशीन कटर के ड्राइंग बने --

इस फोटो मे तीन बिल्डिंग दिखाई दे रही एक बिल्डिंग जो है वो होटल है होटल ग्रैंडियर--

जहां पे जिम के बहोत सारे इक्विपमेंट रखें हुए हैं बड़ा सा शीशा है।

एक अंकल ऑरेंज कलर का शर्ट पहने चड्ढा पहने खड़े उस बंबू में दो अंकल खड़े हैं।

जहां हरियाली की तरफ बकरियां दिख रहीं हैं खा ब्लैक कलर ग्रे कलर ऑरेंज कलर में।

इसके साइड में झाड़ूओ-झाड़ू की दुकान है।